यहां पर एक झील नजर आ रहा है जिसके अंदर चार लोग नहा रहे हैं उसके साइड में नीले रंग की बोट्स दिख रही है।

उसके नीचे एक लोहे की जाली है उसके अन्दर लाईट जल रही है और की अन्दर की पुताई नीले कलर की है बाहर भी एक बल्ब लगा हुआ है।

एंड इसके साइड में एक वाइट कलर की बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का कलर वाइट एंड ग्रे है पीछे पुरा वाइट है बीच में ग्रे कलर की बिल्डिंग है।

यहाँ बहुत सारे पेड़ नज़र आ रहें हैं कुछ का रंग काला है कुछ हरे कलर के हैं।